तस्वीर किसी रिलिजियस या कल्चरल फेस्टिवल का लग रहा है जिसमें एक साथ लोग इकट्ठा हुए हैं।

सामने की तरफ दो बड़ी मशाल जल रही हैं।

सामने की तरफ हमें एक गेट दिखाई दे रहा है जो की बाहर जाने का दरवाजा है।

करटेंस के सामने एक एल_इ_डी टी_वी भी लगी हुई है।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

यहां पे कई कस्टमर्स और दुकानदार दिखाई दे रहे हैं समय दिन का हो रखा है धूप काफी चमक रहा है।

और आर्किटेक्चर जो चारबाग स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज से मिलता है।

यहां पे कई प्रकार की बड़ी बड़ी मछलियां रखी गई है बेचने के लिए।

यह तस्वीर एक स्कूल के कुकिंग कंपटीशन इवेंट की लग रही है।

जो कि दो मंजिला बिल्डिंग के सामने है।

यहां की इमारत हल्के नारंगी रंग की है।

दाएं और बाएं दोनों तरफ पेंसिल और कलर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।